मुझे इस फोटो में पेड़ नजर आ रहे--

ये इस फोटो मे लोग नजर आ र--

मुझे इस फोटो मे एक खिड़की नज़र अम रही है मुझे इस फोटो मे फ्लावर नज़र आ रहे हं।

इस फोटो मे सूज नज़र आ रहा--

इस फोटो में ब्रेन्च नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में पर्दे नजर आ र --

फोटो में रस्सी नजर आ रही है।

इस फोटो में घर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में दो लोग नजर आ र--

इस फोटो में पंखा नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में पक्की रोड नजर आ रही है मुझे इस फोटो में जंगल नजर आ र--

मुझे इस फोटो मे गैरेज नज़र आ रहा--

ये इस फोटो में बर्तन नजर आ र--